यहां पे बहुत सारे लोग है जो यहां पे आए हुए हैं।

देवी की फोटवां रखा गया हैं और जो यहां पे पूजा पाठ चालू हैं।

और साइड में है यहां पे दुकान जो शटर डाउन है उसका और--

मस्जिद गरीब नवाज हीरापुर सामने टू व्हीलर ठहरे हुए हैं।

यहां पे है एक होटल जो यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है।

और पीछे साइड वृक्ष हैं। जो येल्लो कलर के हैं। एक आदमी है ग्रीन --

और लाइटिंग चालू है दो लोग धरे हुए यहां पे जो--

यहां पे एक बड़ा सा दुकान है जो यहां पे होय--

जो चाइनिंग चैन है चांदी के जो सब तरफ रखा गया है।

यहां पे एक रास्ता है जो यहां से सीधा है।

बिछाई भी है लगाई भी है। और एक सोलर प्लांट है। जो --

सूरज डूब रहा है आसमान में परिंदे उड़ रहे है और यहां पे बहोत सारे बिल्डिंग्स हैं जो व्हाईट कलर के है छोटे मो--